कुछ सुद्ध पेट्रोल मिलता है कोई मिलावट वगेरा नहीं रहती है इस पेट्रोल पंप मे--

हेलो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये अम्म्म जोकि --

ये मकान अभी कम्पलीट नहीं हुआ है बस थोड़ा ही सा बना है नीचे का फाउंडेशन बेस अकेला बना है।

हैलो दोस्तों ये कोचिंग सेंटर है जो की ये टीचर वगेरा पढ़ा रहै हैं स्टूडेंट बैठे हैं।

यहाँ पर कपड़े-वगेरा मिलते है जो की गर्ल्स के लिए है यहाँ काफी अच्छा--

ये जिम है यहाँ पर जिम में एक्सरसाइज करने लिए आते हैं तो दिखिए बॉडी ब बता रहा है अपने जो एक्सरसाइज की है इसने--